बहुत सारे बिजली के तार हैं ऊपर आसमान--

इस चित्र में हमें एक छत की रेलिंग दिखाई दे रही है रेलिंग में एक बहुत सारी टेबल है।

एक काले रंग की टी-शर्ट पहना है एक ऑरेंज रंग की साड़ी पहनी है।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

बहुत सारे छोटे-छोटे कालीपन्नी में पौधे रहते हैं।

साइड में सफेद रंग की लाइट है एक बड़ा घर है।

इस चित्र में हमें एक कमरा दिखाई दे रहा है कमरे की दीवारें पीले रंग की है कमरे में काले रंग की जालियां लगी है।

एक काले रंग के है सड़क पर कुछ गाड़ियां चल रही है एक ऑटो चल रहा है कुछ लोग खड़े हैं बिजली का खबा है।

इस चित्र मे हमे एक खिलौनों की दुकान दिखाई दे रही है खिलौनों की दुकान के बाहर आइटम टॉयस लिख--

इस क्षेत्र में हमें कमरा दिखाई दे रहा है कमरे का लाल रंग का कारपेट है कमरे में एक स्टूल रखा है एक लड़का खड़ा है लड़का पीला--

इस चित्र हमें एक सफेद रंग घर नजर आ रहा है घर के बाहर लाल रंग से कला भवन लगा है।

इस चित्र में हमें एक बर्फीली जगह दिखाई दे रही है बर्फीली जगह में एक आदमी खड़ा है आदमी काले रंग का कपड़ा पैना --

पार्लर के बाहर है और आइसक्रीम लिखा हुआ --

इस चित्र में हमें एक पुराने जमाने का घर दिखाई दे रहा है घर की दीवार पीले और लाल रंग की पुती है।

पीछे चार स्कूटर खड़ी है स्कूटर काले रंग की हैं।

दिखाई दे रहा है रास्ते के दोनों साइड गार्डन है गार्डन में हरे रंग की गास--

बोर्ड के ऊपर दो लड़का लड़की बने हैं साइड में नंबर लिखा है नीचे एक बोर्ड है बोर्ड के ऊपर--

साइड में कुछ पेड़ लगे उन पीले रंग की साड़ी पहनी है।